टी शर्ट पीछे पड़ा हुआ है मीटर भी लगा दिखाई दे रहा है गमले में हरे पौधे लगे हुए हैं।

बहोत सारी वाशिंग मशीन खड़ी हुई है वाशिंग मशीन के ऊपर ऊपर फूल भी बना हुआ है।

ऊंचाई पे पत्थर है या छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं जो काफी ऊंचा है।

जमीन पे छोटे छोटे हरे हरे घास उगी हुई है।

लाइट क्रीम कलर से पुट्टी पुता है बाहर बहोत सी बाइक खड़ी हुई हैं।